साथ में बहोत सारी बिल्डिंगें नजर आ रही हैं।

गेट के ऊपर लिखा हुआ रानी पार्क परि महल नगर निगर--

शिमला साथ में एक चादर का छत--

एक सड़क दिखाई दे रही है।

उस बोर्ड पे लिखा है इंडियन पोस्ट इंडिया पोस्ट --

साथ में गनेश जी की मूर्ति और उनके सामने--

बहुत सारे औरतें दिखाई दे रहे।

उसके सामने ऊंची ऊंची बिल्डिंगे और सामने सीमेंटेड एक घर जो बन रहा है।

ठीक है उस बालकनी के अंदर बहुत बड़ा बड़ा शीशा दिख रहा जो बहुत ऊंचे लंबी बिल्डिंग है।

ए_टी_एम जैसा दिख रहा जिसके बाहर लिखा हुवा स्टेट बैंक ।

दिख रहा जिस पे लिखा हुआ ए_टी_एम और अंदर जाने के लिए दो सीढ़ियां बनी हुई--

और सड़क के साइड में एक मूर्ति--

के ऊपर एक लगा है और साथ में--

छोटे छोटे बादल दिखाई दे रहे हैं जो काफी सुंदर लग रहे हैं।

यहां पर हमें एक नजर आ रहीं हैं।

ये गाय लाल कलर के रस्सी में बधी हुई है।

और ये इसकी आंखे खुली है और ये अपने चारे को देख रही।

जिसका कलर येलो है एक साथ में बड़ा सा पेड़ दिखाई दे रहा--